और दीवार है दीवार पर घड़ी लगी है घड़ी के बगल में--

और सामने ही एक लड़का बैठा हुआ है उसने और बाकी छोटे छोटे बच्चे भी हैं।

पिंक कलर की ड्रेस डाली हुई है ओनिडा करके सामने एक शॉप का बोर्ड लगा ओनिडा और टाटा स्काई का लगा हुआ है।

और खाया हुआ छोड़ा हुआ है खा के चले गए है लोग जो खाने वाले थे प्लेट्स है प्लेट्स मे चम्मच है और बाकी चावल्स है।

बेकरी शॉप लग रही है और काफी सारी चीजें रखी है मिठाई की शॉप है।

व्हाइट कलर और भी रंग की बोल हैं और ये खेल रहें हैं।

जिसने पीली कलर की टीशर्ट पहनी हुई है।

सामने में एक साइकल खड़ी हुई है और साइकल जो है रेड कलर की है।

वो मैदान है काफी बड़ा सा मैदान में खड़ी हुई है साइकिल ।

और काफी लोग खड़े हुए हैं सज्जे के उधर--